यह एक मोटर पैडिस में चार पांच लोग खड़े हुए हैं और एक कार खड़ी हुई है जिसको वह देख रहे हैं।

हम पहाड़ी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है ये देखने में लग रहा है।

और एक बाहर लोहे का गेट भी लगा हुआ है जिस पर पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें से एक पुतला खड़ी हुआ है जिसने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

और पहाड़ के बाहर सूखा नज़र आ रहा है ऊपर सफेद कलर के बादल छाए हुए हैं।

ब्लेक है और उसकी एक आँख भी बाहर दिखाई दे रही है आधा शरीर उसका पानी के अंदर है और आधा पानी के ऊपर।